आसमान मे सुंदर से बादल भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र के अंदर एक सब्जी की दुकान नजर आ रही है दुकान के अंदर भिन्न-भिन्न प्रकार की सब्जिया दिखाई दे रही है सामने एक व्यक्ति भी बैठा नजर आ रहा है।

इस चित्र के अंदर एक पार्क नजर आ रहा है जहा पर शेड की नीचे एक व्यक्ति तस्वीर खिचवाता हुआ दिख रहा है।

उस व्यक्ति के सामने एक हेलमेट भी दिखाई दे रहा है साथ मे कुछ पेड़ भी नजर आ रहे है।

सामने एक मिट्ठी का रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र के अंदर एक गिरजा घर नजर आ रहा है जहा पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ माइक मे कुछ बोल रहा है।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

साथ ही मे सामने कुछ कुर्सिया भी नजर आ रही है एक मूर्ति भी नजर आ रही है मूर्ति के पीछे एक झोपड़ी भी बनी हुई है।

जिसके अंदर रंग-बिरंगे फूल दिखाई दे रहे है। इमारत के ऊपर एक बैनर भी नजर आ रहा है। उसके सामने एक पाइप भी दिखाई दे रहा--